ये यहां पर एक मंदिर का दृश्य दिख रहा है।

मुझे यहां पर एक जन सेवा केंद्र का दृश्य दिख रहा--

मुझे यहां पर एक हॉस्पिटल दिख रहा है जिसके बाहर रोड पर भारत नर्सिंग होम लिख रहा है।

मुझे यहां पर एक कमरा दिख रहा है जिसमें की दो पंखे लगे हुए।

पांच छह गाड़ियां खड़ी हुई हैं और--

दीवारों पर अंबुजा सीमेंट का नाम लिखा हुआ है और यह और अपन स्कूल का नजारा है यह बहुत अच्छा लग रहा है।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

यहां पर बहोत ही भीड़भाड़ का दृश्य दिख रहा है और बहोत सारे आदमी दिख रहे हैं।

मुझे यहां पर एक ग्राउंड का दृश्य दिख रहा है।

यहां पर बहोत सारे पीले रंग के झंडे भी लगे हुए हैं।

आज इसमें की एक भारत भारत का तिरंगा लगा हुआ है और बहोत सारी किताबें रखी हैं।

मुझे यहां पर एक मैरिज होम का द्रश्य दिख रहा है जिसमें की एक बाइक खड़ी हुई है और इससे सामने चलकर एक और बाइक --

मैन गेट पर एक फोटो लगा हुआ है जिसमें की दुल्हन छपी हुई है और दीवारों पर बहुत अच्छे अच्छे --

बहोत सारे लड़के उसके पीछे बैठे हैं और यहां पर बहुत सारा जिम का सामान पड़ा हुआ है।

क्योंकि बहोत महंगे महंगे खेल खिलौने और यहां पर दो तीन सुरहिया भी रखी हुई है।

यहां पर की बहुत सारी लाइटें लगी हुई है और यहां पर बहुत सारे आदमी इधर उधर घूम रहे हैं।

और इसकी दीवार पर नीला और सफेद रंग किया गया है।

और इसके अंदर एक बहुत बड़ा रेलम का पेड़ खड़ा हुआ है।

जिसके बाहर एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी है और एक काले रंग की गाड़ी खड़ी हुई है।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

इसमें बहुत सारी महंगी महंगी साइकिले खड़ी हुई है।

यहां पे मैरिज होम का दृश्य दिख रहा है जो कि खाली पड़ा हुआ है।

यहां पर अच्छी अच्छी सजावटें की गई हैं।

एक अगली भी लगी हुई है।

मुझे यहां पर एक घर दिख रहा है जिसमें कि बहुत सारी एसिया रखी हुई हैं।

यहां पर बहोत सारे स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं इधर उधर।

इसमें की बहुत सारे गिटार टंगे हुए हैं।